यह बिल्डिंग का चित्र हे जिसमें नीचे की बिल्डिंग में सफेद रंग है और ऊपर की बिल्डिंग ईंट की बनी हुई है।

यह एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जिसमें पर्पल और पीला सफेद रंग दिख रहा है नीले रंग की खिड़कियां दिख रही हैं।

यह एक स्टेशन का चित्र है यहां पर पटरियां दिखाई दे रही हैं।

दुकान के अंदर बहुत सारा सामान है। ऑरेंज कलर की दुकान है। पीले रंग की दीवाल है। ताला दिखाई दे रहा है और सीढ़ियां भी दिख रही हैं।